यहाँ हमे एक रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है अ पेलेटफोर्म है यहाँ --

हमें एक खुली हुई कार नजर आ रही है जोकि आगे से खुली हुई है ।

यहाँ किसी के शादी का कार्यक्रम चल रहा है मंच दिखाई दे रहा है काफी अच्छे से सजावट की गई है ।

जिसमें बाउंड्री की गई है बाउंड्री के अंदर बहोत सारे बड़े बड़े --

यहाँ हमें एक चर्च दिखाई दे रहा हैं ।

उनके आस-पास कुछ नजर नही आ रहा है खम्बे काफ़ी पुरान --

पहाड़ ऊँचा भी है।

ऐ साइड में एक हरा रंग का इंजन दिख रहा है।

यहाँ हमें एक जंगल नजर आ रहा है जिस में बहुत बड़े-बड़े पत्थर लगे हुए हैं।

ट्रेन के पीछे साइड काफ़ी बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

कई व्यक्ति खड़े हुए है एक व्यक्ति फोन लिया हुआ है हाथ में और वहाँ पहाड़ी की --

रात का समय लग रहा है कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं।